ये पीछे लाइट लगा हुआ है फेन लगा हुआ है अच्छा लग रहा है देखने मे सब चेयर पर बैठे हुए हैं सब लाइन से बैठे हुए हैं उधर दूसरा फेमली इधर दूसरा फेमली है| अच्छा लग रहा है देखने में ये अंकल खा रहे हैं भोज।

पीछे का व्यू मस्त लग रहा है देखने में केंडल जो लगाया वो भी मस्त है सब रेड - रेड पे कैंडल लगा हुआ है | अच्छा लग रहा है केंडल पीछे दरवाजा है तीन दरवाजा लग रहा है।

ये फंक्शन है कोई यहां पे बहुत बार हम भी लोग गए हैं अच्छा सजाबट है अच्छा लग रहा है देखने में और ये कुर्सी पर जो क प-पर्दा लगा हुआ है ओ भी अच्छा है।

पता नहीं ये लोग मछुवारा है चाहे जो भी है अच्छा लगा देखने में।

क्या बैठा हुआ है मस्त पोज देते हुए अच्छा लग रहा है देखने में| पीछे लाइट या कुछ भी जो भी लगा हुआ है चमकीली चीज लगा हुआ है ब्लू कलर का अच्छा लग रहा है देखने में पीछे पानी का फुब्बारा मार रहा है।

मस्त लग रहा है व्यू पूरा पानी-पानी है बहुत ज्यादा पानी हो गया है पीछे एक बोट चल रहा है जिसपे बहुत आदमी सवार कर रहे हैं और आगे एक दो झण्डा भी लगा हुआ है बोट में अच्छा लग रहा है देखने में।

आगे जो कुर्सी खाली हुए हैं यह दो आदमी खरा हुआ है ये जो बैठ जाता कितना अच्छा लगता ओ देखने में मस्त लगता देखने में लेकिन ये दोनों को खड़े कर दिए ज गए हैं ।

लड़की कितना मस्त पोज़ दे रहे है पीछे मस्त लग रहा है पन्डाला अच्छा लग रहा है शूज भी मस्त है।